ये कमरा है इस कमरे में आ आ आ का कोई भी नहीं है।

ये स्विमिंग पुल है स्विमिंग पूल में बिल्कुल--

यो एक दुकान है इस दुकान में बच्चों के कपड़े भी लगे हुए हैं।

टी-शर्टें भी है और बनियाने भी हैं और नीचे बॉक्सेस रखे हुए हैं कपड़ों के खाली किए हुए।

आगे लाइटें दिख रही है उसके आगे भी पहाड़ उसके आगे पहाड़ उसके आगे --

ये तस्वीर समुंदर की है इसमें बिल्कुल समुंद्र बिल्कुल शांत है समुंदर का पानी नीला रंग का है।

ओ नाहीं इसमें पंछी हैं उड़ रहे और ना ही कुछ और है।

यह तस्वीर एक जिम की तस्वीर है इस जिम में एक लेडिज बैठी हुई है एक जेंट्स --

छोले की दुकान है और साइड में गोल-गप्पे भी रखी हुए हैं।

यह एक कपड़ों की दुकान है कपड़ों की दुकानों में स्टैंड पर नीचे--

यह तस्वीर एक बिल्डिंग की तस्वीर है बिल्डिंग में चिट्टा रंग किया हुआ है एंड बोर्ड लगा हुआ है।

आम रखे हुए हैं और साइड में बैंगन रखे हुए हैं ऊपर अंगूर--

यह तस्वीर एक घर की तस्वीर है।

और इसमें ऑरेंज कलर का कलर किया हुआ है।

बीस कुर्सीियाँं रखी हैं साइड - साइड में सिक्स --

एण्ड पूरा कमरा जो हैफर्नीचर से सजाया हुआ है।

लाइटे पड़ी है और आदमी इसमें सड़क पे चल रे हैं एंड --

औ-अं-फौजी की ड्रेस पहनी और एक लड़की जो परी बनी हुई है।

और इसमें तीन लड़के लगे हुए हैं काम में और नीचे जमीन --

स्टेशन में एक रेलगाड़ी खड़ी हुई है और इसम--

ये किसी का घर है घर के बाहर--

लड़का खड़ा है वह पता नहीं क्या कर रहा है ये--

इस तस्वीर में जो है अंकल खड़े हुए हैं रेड रंग के--

इस्तान ये जो घुवारा जला हे --

यह तस्वीर य च चु एक्ने मिर च पाया --